एक हॉल है जिसमें बहोत सारे लाइट लगी हुई हैं। इसमें आगे एक वुमेन खड़ी है।

इसमें वो पेड़-पौधों में एक लेडीज पानी दे रही है पेड़-पौधों को।